बगल में खम्भा जैसा उसमे शेर का बनाया हुआ है पथल का परक है सब फूल है रेड व्हाइट बहुत सारे पेड़-पौधे है पार्क के छोटे-छोटे पेड़ है |

ये नेशनल कॉफी है नेशनल कॉफी इसमें कॉफी भी है |

पल्सर लगा हुआ है टी ट्वेंटी बस बहुत अच्छा है।

यहाँ बहुत सारी बर्फ है यहाँ पे लोग एन्जॉय करने आते हैं काफी लोग हैं यहाँ बहुत सर्दी है --

रिपेयर होता है ये रिपेरिंग की दुकान है स्कूटी रिपेयर होती है बगल में भी --

शॉप लग रहा है बहुत अच्छा सजावट हुआ है ए.सी लगे हुए हैं।